एक बहोत बड़ा एरिया है जिसमें तीन घोड़े हैं एक घोडा सफ़ेद रंग का है दो घोड़े कत्थे रंग के हैं तक मिट्टी दिख रही है।

एक दुकान है जो की कपड़े की दुकान है जिसमे लकड़ी के काउंटर बने हुए हैं बहोत सारे जिसमे सामान रखी हुई है सभी साड़ियां रखी हुई हैं।

रंगे बिरंगे डब्बे लगे हैं जो की सफ़ेद कलर के और हरे कलर के और लाल कलर के हैं ।